यहां पर बहोत सारे कुकर के बॉक्स रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

अभी वाशिंग मशीन पर पन्नियां लगी हुई दिख रही है।

एक घोड़ा रनिंग करता दिखाई दे रहा है।

सामने एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नजर आ रहा है।